और ऊपर पंखे भी दिखाई दे रहे हैं दीवाल के ऊपर --

टेबल पर देखिए कुछ ग्लास भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक खिड़की भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और बेंचेस का कलर लाल और हरे कलर की बेंचेस है जो काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं वर्कर है जोकि काम कर रहे हैं ।

और पीछे के तरफ देखिए काफी सारे लड़के लड़कियाँ बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर --

और ऊपर देखिएगा ये बै बलून से गुब्बारों से डेकोरेशन किया गया है।

यह देखिएगा फ्रेंड्स एक रूम दिखाई दे रहा है जहाँ पे बीच में बड़ा सा टेबल है आजू बाजू कुर्सियाँ रखी हुई है और दीवारों पर देखिए कुछ तस्वीरें टंगी हुई नजर आ रही है।

उसके ऊपर सा काफी सारे पैकेट्स रखे हुए है बहुत सारे पैकेट्स है।

यहाँ पर एक इस्कूल दिखाई दे रही है सामने की तरफ और गोल गोल काफी सारे दरवाजे दिखाई दे रहे है।

और एक व्यक्ति जो कि अह एक्सरसाइज करता कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति उसके पास में खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

ये देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है और टेबल रखा हुआ है बड़ा सा काँच का टेबल है ये--

यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

पोश्टर लगे हुए है बड़े बड़े जिसपर लिखा हुआ है भारतीय --

ये देखिए फ्रेंड्स कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है और सामने देखिए हैंगर पर कपड़े टंगे हुए हैं और पीछे देखिएगा --

यहाँ देखिएगा फ्रेंड काफी बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है और काफी लंबा सा टेबल यहाँ पे लगा हुआ है काफी सारी कुर्सियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है।

बड़ा सा बोर्ड लखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है विश्वकर्मा --

एक टॉयलेट नजर आ रही है टॉयलेट सीट वाली टॉयलेट है पसा पास में एक डस्टबिन रखा हुआ है।

एक पंखा नजर आ रहा है जोकि काले कलर का है।

अअअ यहाँ पे देखिएगा पीछे की तरफ कोई घर दिखाई दे रहा है।

यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स एक आदमी दिखाई दे रहा है।

पुस्तक की दुकान है और कासी काफी सारी कॉपी किताबें पुस्तकें यहाँ पर देखो जमी हुई दिखाई दे रही है।

सामने देखिएगा काफी सारी चॉकलेट बिस्किट टॉफी नजर आ रही है।

पीछे की तरफ देखिए कोल्ड्रिंक्स की बोटले दिखाई दे रही है काफी सारी बोटल है लिमका --

ये देखिएगा फ्रेंड यहाँ पे शादी का स्टेज दिखाई दे रहा है सजा हुआ और यहाँ पे देखिएगा --

काफी सारे घर नजर आ रहे हैं यहाँ पर काफी सारे मकान दिख रहे हैं।

और देखिएगा काफी सारे हरे हरे पेड़ बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ देखिएगा --

एक यहाँ पर देखिएगा ऊपर आसमान भी दिखाई देरो है।

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है मिथिला बुक सेंटर ।

काफी सारे कपड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं काँच के टेबल्स लगे हुए काफी सारे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर की तरफ देखिएगा काफी सारी लाइटें यहाँ पर दिखाई दे रही है।

और काफी सारे लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ऊपर की तरफ देखिएगा--

बिजली के तारे दिखाई दे रहे हैं कंबा दिखाई दे रहा है बिजली का--

खिड़की भी दिखाई दे रही है और काफी सारी कलरफुल यहाँ पर पन्नियाँ नजर आ रही है।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

यहां पे वाशिंग मशीने दिखाई दे रही है काफी सारी वाशिंग मशीन है ये --